पंडाल हईई पंडाल सजाइल हईई।

पानी पिय छई हाफ पैंट पहनले हई।

आ गुलाबी कलर उज्जर कलर के घगरा पहनले हई जूती पेहनले हई तर में जीन्स पेहनले हई।

उम असमान उन अथी ब्लू कलर के लगै छई घास-उस हई।

सब सजायल - उजायल है।